व्यक्तियों के पास वाहन खड़ी हुई है बहुत सारे व्यक्ति नहा रहे है नदी के पास एक बड़ा मैदान है।

महिलाएं के पीछे सजा हुआ है।

सभी बच्चे अपनी मेज पर लेटे हुए है क्लास में एक बड़ा-सा आईना लगा हुआ है।

सामने एक ऑफिस है ऑफिस में बहुत सारी खिड़कियां लगी है और चारों तरफ बाउंड्री है।

एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है गेट के सामने कुछ वाहन खड़े हुए हैं वाहन में एक व्यक्ति बैठा है।

घर में एक खिड़की है और एक दरवाजा है। दरवाजे के सामने चप्पल रखी हुई है।

दुकानों के ऊपर घर बना हुआ है घर के पास एक बाउंड्री है जिसमे बोर्ड लगा हुआ है।